और इसके सामने की तरफ बहोत सारी कार खड़ी हुई है और रोड पर से भी बहोत सारी कार निकल कर जा रही है।

यहाँ पर एक ऑफिस है और ऑफिस पूरा अंदर से व्हाइट कलर का है।

यहाँ पर व्हाइट और येलो कलर की लाइटिंग लगी हुई है और कुछ लैंप लटके हुए हैं।

पास में ही बहुत सारे गमले रखे जिसमें पौधे लगे हुए टेबल चेयर्स रखे हैं।

इसके सामने एक ए_सी लगा हुआ है ब्राउन कलर के सामने पर्दे हैं।

और यहाँ पर बेड लगा है बेड पर बहोत सारा सामान पड़ा है।

और पूरा लैब बना हुआ है जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स रखे हुए हैं।

अलग अलग कैबिंस में और इनके सामने लोहे की चेयर रखी हुई है।

और जो बाउंड्री है उसके बाहर की तरफ बहोत सारे बड़े पेड़ लगे हुए अंदर कुछ गमले--

ब्लू कलर के पोस्टर लगे हुए है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लोग अंदर की तरफ रूम में जा रहे हैं रूम बने है।

यहाँ एक हॉल है और पूरा व्हाइट कलर का है सामने एक गणेश जी कि--

यहाँ पर एक घर है जो लाइट ग्रीन और वाइट कलर का है पूरा और यहाँ पर बहुत सारा लकड़ियों का--

यहाँ पर बहोत सारी बेल लगी हुई है ग्रीन कलर की जो नीचे की तरफ लटक रही है।

चारों तरफ भी पीछे की तरफ भी कुछ पोस्टर लगे हैं ब्लैक कलर के और वाइट कलर के--

यहाँ पर बहोत सारे घर बन रहे हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहोत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं।

और कुछ मिरर लगे हुए हैं चारों तरफ बड़े बड़े--

सामने एक पोस्टर लगा है बड़ा और आसपास रेड कलर की--

चेयर लगी हुई है कुछ लोग खड़े हैं आसपास चारों तरफ बाउंड्री में--

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और बहोत सारे टेबल चेयर लगे हैं।

यहाँ पर एक स्टेज बना है जिस पर एक बड़ी चेयर रखी है जिस पर दो लोग--

नीचे की तरफ ग्रीन कलर की कारपेट बिछी है सामने--

ब्लू वाइट कलर के पर्दे लगे हैं जहाँ से सीढ़ियां हैं ऊपर जाने का रास्ता है।

भीड़ है सामने से एक रोड जा रहा है रोड पर से कुछ वाहन निकल रहे हैं बाइक ऑटो --

हिंगलाज बुक डीपो के नाम से जहाँ स्पोर्ट्स स्टेशनरी फोटो कॉपी और बुक --

और कुछ माइक्स रखे हुए हैं और ये पूरा रोम रेड कलर का है।

टेबल पर रखें सामने एक ऐ_सी लगा है बैक साइड में लाइट है।

और जिसमें अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग शॉप्स डिवाइड जिनके सामने की तरफ पोस्टर लगे--